यहा पर एक सलून है इस सलून के अंदर दो आदमी है एक आदमी चेयर पे बैठा है और दूसरा आदमी उस आदमी के बाजू मे खड़ा है सामने आईना लगा है पीछे भी एक आईना है।